पांच लोग खड़े हुए हैं जिसमें से तीन औरतें हैं।

सूर्य डूबने की कगार पर है।

है दोनों स्टैंड पर लगी हुई है दोनों के ऊपर--

और यहाँ सिर्फ लड़कियां ही पढ़ने आती है।

फूल मालाएं पंखे लगे हुए हैं।

और आसपास काफी अच्छा--

किसी टूल्स की दुकान नजर आ रही है।

और प्लास वगैरह रखे गए हैं चाभियां रखी गई हैं जिससे पेचों को कसा जाता है।

और एक आदमी भी खड़ा हुआ है जो कुछ काम कर रहा है।

यह साईं बाबा का मंदिर है।

दो पिक्चर भी लगी हुई है जैसा कि देख पा रहा हूं यह कोई.--

एक बस इसमें किसी और राज्य की नजर आ रही है एक प्राइवेट बस है जिसका नाम राजडा है।

जून के आस पास की लग रही है।